ये एक पारक है कुछ लोग यहाँ घूमने आया है।

इ एक दुकान छीके सोरूम छीके कपड़ा के--

नीला पिला हरा पंखा लगल छै टेबुल छै लाल।

फूल लगल छै गेट पर पिला-पिला गेट बनल छै पिला फूल लगल छै व्हाइट फूल छै ब्लू फूल छै आ ----

और ओय मे आदमी छै कुर्सी पर बैठल एगो आदमी जा रहले एगो हरा सनक ----